बोहोत अच्छे पेड़-पौधे लगाये गये हैं एवं यहाँ पर इस पार्क को अच्छा और सुन्दर बनाने के लिये यहाँ पर फूल भी लगाये गये और यहाँ पर बहोत अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे और फूल की क्यारियाँ भी लगाई गयी हैं जो कि यहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिये आते हैं एवं यहाँ पर दूर-दूर से लोग अपने से परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिये आते --

यह एक नदी है जो काफी लम्बी-चौड़ी नदी है। यहाँ इस नदी में जलस्तर काफी ज़्यादा रहता है। --

बड़े-बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी एवं प्रतियोगिता अ परीक्षा के लिए सारे बुक यहाँ पे उपलब्ध मिलते हैं। स्टेशनरी के सारे कॉपी कलम पेंसिल इत्यादि --

ये एक नदी है जो कि काफी गहरी और काफ़ी छोटी नदी है। इस नदी में जलस्तर काफी ज़्यादा रहता है। इस नदी पर दो पुल भी बनाये गये हैं जो कि एक भारी वाहनों के लिए बनाया गया है और एक पूल ट्रेनों के जाने लिए बनाया गया है जो --